और बहुत से पेड़ लगे हुए है सामने की साइड ।

और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर और पीछे की साइड ओ दिख रहे है पाइप ।

और बिजली का खंबा दिख रहा है तार दिख रहें वहां पर।

और इसके आगे एक पोस्टर पड़े हुए हैं और सामने के साइड एक एक्टिवा पड़ी है वाइट कलर की --

और कुछ बोर्ड लगे हुए हैं और टू व्हीलर वाहन दिख रहा है एक साइकिल दिख रही है सामने की साइड पेड़ दिख रहा है।

सामने की साइड एक बहुत बड़ा सा टावर दिख रहा है सामने व्हाइट रेड कलर में और बहुत से पेड़ दिख रहे है ।

और कुछ रेलिंग दिख रही है अ लोहे की बनी हुई रैक --

सामने की साइड एक अ मॉल टाइप दिख रहा है।

और एक व्यक्ति बैग लेकर ब्लू कलर का ऊपर चढ़ रहा है बस के ऊपर।

और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है कोर्ट और टाई लगाकर।